यहाँ पे चार पांच लोग है जो डांस कर रहे है और बैलून लगा हुआ है जो तीन कलर का है और कुछ अलग-अलग ड्रेस में अपने-अपने ड्रेस और स्टाइल में डांस कर रहे है और सभी एक तरह से डांस कर रहे है। जो देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।